और यहां कुछ कांच का फर्नीचर बना हुआ है सामने दीवारों पर पेंटिंग टंगी हुई है सिनरी वगैरा--

और ये गुम्बद वाली बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर और यहाँ पर एक पार्क दिख रहा हैं जिसमें हरी-भरी घास दिख रही हैं।

और यहां दूर दूर पर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

इसमें पास में एक एक्सिस बैंक भी दिख रहा है उसका ए_टी_एम --

और यहां पर कुछ अलमारी बने हुई है लकड़ी की।

ये हॉट डॉग बेचते हैं यहाँ कुछ हॉट डॉग रखे हुए दिख रहे हैं।

एक अ एक स्टील की टंकी रखी है पानी की एक कचरे का डब्बा रखा है ब्लू कलर का।

और ये हरी भरी घास और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जहां तीन मूर्ति है। ये एक बड़ी है दो छोटे मूर्तियां है यहाँ।

और ये रेलिंग बनी हुई स्टील की यहां--

और आसपास काफी सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और यहां पर एक सर्कल बना हुआ पाइप भी रखा हुआ है।

और यहाँ कुछ खंभे लगे हुए हैं लाइट के और यहाँ कुछ घर भी बने हुए दिख रहे हैं बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी।

और यहाँ पर एक दरवाजा दिख रहा हैं।

एक टीन का शेड दिख रहा है जिसमें कुछ बाईकें खड़ी हुई दिख रही है।

जिस पर काई जमी हुई दिख रही है यहां सड़क पर कुछ बाइक वगैरह खड़ी हुई दिख रही है और--

एक चाय की स्टाल दिख रहे हैं यहां और कुछ ऑटो दिख रही है यहां पर खड़ी हुई।

एक लड़का मिरर मे देख रहा है एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है और एक और मिरर मे देख रहा है यहां काफी सारी मशीनें रखी हुई दिख रही है।

और पास ये चीनी की बोटले दिख रही हैं ऊपर मनी प्लांट दिख रही है।

और एक फर्नीचर पर कुछ डब्बे में डब्बे रखें प्लास्टिक के।

ऊपर रस्सीयों में कुछ वेफर्स टंगे हुए हैं खाने के।

जिसपे काफी सारी प्याज जमी हुई दिख रही है।

यहां मैचिंग सेंटर की यहां पर साड़ी वगैरह भी मिलती हैं।